यह भी एख डांसर और ये भी एक ट्रेडिशनल डांसर है अपने ग्रीन और रेड में साड़ी पहनी हुई है अपने हाथों पर में आल्ता लगा है यह भी डांस कर रही है किसी प्रोग्राम में यहां बगल में--

ये रेड रंग का कुछ वर्थ करके यहां पे लिखा हुआ है उस आदमी ने वाइट रंग की शर्ट और जींस पहना हुआ है उसके सामने कुछ सामान भी है जिसे गाड़ी ठीक होती है।

यह पूरा एक रूम है जो रेड और व्हाइट में है और उनके वाल्स येलो है खिड़की पर ब्लैक रंग के कार्टंस लगे हुए हैं और लड़की के पीछे सेल तरह का मुझे दिख रहा है जहां लाइट्स झूल रही है और एक पेन है जो ऑन है।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासी लग रहे हैं इनका कुछ जुलूस जैसा निकला है और यहाँ पे कुछ औरते है और आदमीआदमियों के गले में एक लकड़ी जैसा कुछ बना है और वो उससे ढोल जैसा बजा रहे हैं।

पीछे बहुत सारे बुक्स और पेन्स वागेर है और कुछ बलूनस भी धिक रहे है उनके पीछे एक रेड कलर का चेयर्स भी है।

एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है जो व्हाइट रंग में है उसके पास काफी पेड़ है और बिल्डिंग के ठीक बाहर बहुत साड़ी बाइक्स खड़ी हुई है।

वो लोग कुल्हारी से खोद रहै है जमीन मे कुछ आदमी और औरतों के हाथ मे छतरी भी है और यहाँ सारे आदमियों के ही कंधे पे बेग्स लटक रहै है।

एक इंडियन डांसर लग रही हैं जिस मे कुछ ट्ट्रेडिशनल पर्फॉर्म किया हैं या कर रही हैं इनके आस पास दो लड़किया भी हैं पर जिन कि पूरी इमेज नहीं देख रही हैं।

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है मुझे जो ब्लॉक डेवेलोमेंट ऑफिसर का ऑफिस है यहां मुझे एक बूढ़ी औरत दिख रही है और एक आदमी दिख रहा है जिसेमें चेक ड्रंक का शर्ट पेहना हैं। और --

खुला मैदान है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ एक आदमी लेटा है और एक आदमी उसका पैर स्ट्रेच करने में मदद कर रहा है जो आदमी पैर स्ट्रेच करने में मदद कर रहा है उसने ब आ मास्कक पहना हुआ है और चश्मा पहना हुआ है।

नीचे ग्रीन रंग का फर्श है यहां एक चेयर रखा हुआ है जहां दो लड़के बैठ के फोटोस खिंचवा रहे हैं दोनों ने ही ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और औरत ने साड़ी पहनी हैं उनके पीछे काफी लोग हैं और इस जगह क बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है मुझे पिंक कलर के कर्टन दिख रहे हैं और ये रात का समय है जहां पे ये आदमी और औरत हैं ।

यात्रा की तैयारी हो रही है तीन रथ यहां पे मुझे दिख रहें है एक आधा दिख रहा है दो रथ पूरे साथ साथ दिख रहें हैं।

और ब्लू रंग का हाफ पेंट उसके एक पैर में हवा है और एक उसके बेड पे बेग कुछ कपड़े है और न्यूज़ पेपर भी दिख रहे है वॉल येलो रंग की है क्लॉक और वॉयलेट रंग का कर्टन्स हैं।

दो लड़की और तीन लड़के है जो सेल्फी ले रहे है पीछे बहुत सुंदर रेड और व्हाइट फ्लावर्स में सजाया गया है पीछे पिंक और येलो कर्टंस हैं।